मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स इंटरफेस और टूलबार्स पर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम फ़ायरफ़ॉक्स इंटरफेस और टूलबार्स के बारे में सीखेंगे
इस ट्यूटोरियल में हम उबंटू 1004 के लिए फ़ायरफ़ॉक्स वर्ज़न 70 का इस्तेमाल करेंगे
चलिए अब फ़ायरफ़ॉक्स इंटरफेस को देखते हैं
फ़ायरफ़ॉक्स में सभी फीचर्स हैं जो एक आधुनिक ब्राउज़र में होने चाहिए
मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स को सफलतापूर्वक इस्तेमाल करने के लिए इसके हर एक फीचर से परिचित होना चाहिए
मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स इंटरफेस को इन 6 विशिष्ट क्षेत्रों में विभाजित कर सकते हैं
मेनू बार मेन्यू बार नेविगेशन टूलबार नैविगेशन टूलबार बुकमार्क्स बार बुकमार्क्स बार साइड barसाइड बार स्टेटस बार स्टेटस बार और कंटेंट areaकंटेंट एरिया
प्रत्येक को देखते हैं और सीखते हैं कि यह क्या करते हैं
फाइल मेन्यू पर क्लिक करें और फिर न्यू विंडो क्लिक करें
एक नई विंडो आती है
कुछ लोगों को ब्राउज़र में छोटे अक्षरों को देखने में परेशानी होती है
view ज़ूम और ज़ूम इन पर क्लिक करके पेज को ज़ूम करते हैं
या तो Ctrl प्रेस कर सकते हैं
यह टेक्स्ट बड़ा कर देगा
मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स का कौन सा वर्ज़न हम इस्तेमाल कर रहे हैं यह जानने के लिए हेल्प और अबाउट पर क्लिक करें
डिफाल्ट रूप से फ़ायरफ़ॉक्स एक होमपेज प्रदर्शित करता है
अपने पसंद के वेबपेज को होमपेज के रूप में सेट करने के लिए एडिट और प्रेफरेंस पर क्लिक करें
विंडोज़ यूज़र्स कृपया टूल्स और आप्शंस पर क्लिक करें
जनरल टैब में होमपेज फिल्ड पर क्लिक करें और wwwyahoocom टाइप करें या अपनी कोई पसंदीदा वेबपेज टाइप करें
बायीं ओर नीचे कोने में क्लोज़ बटन पर क्लिक करके फ़ायरफ़ॉक्स प्रेफरेंस विंडो को बंद करें
वेबपेज में कुछ विशिष्ट शब्द को खोजने के लिए एडिट मेन्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं
अड्रेस बार में wwwgooglecom टाइप करें
एडिट और फाइंड पर क्लिक करें
ब्राउज़र विंडो के नीचले तरफ एक छोटा टूलबार मौजूद है
टेक्स्ट बॉक्स में गुजराती टाइप करें
आप देखेंगे कि पेज पर गुजराती शब्द चिन्हांकित हुआ है
यह फंक्शन बहुत उपयोगी है जब वेबपेज में एक बड़े टेक्स्ट में से कुछ खोज रहे हैं
इसे बंद करते हैं
जैसे नाम से पता चलता है नैवीगेशन टूलबार आपको इन्टरनेट के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करता है
नैवीगेशन बार एक बड़ा टेक्स्ट बॉक्स है जहाँ आप उस वेबपेज का अड्रेस टाइप करते हैं जिसे आप देखना चाहते हैं
इसे उर्ल बार उर्ल बार या एड्रेस barअड्रेस बार कहते हैं
उर्ल पर क्लिक करें और जो अड्रेस पहले से ही मौजूद है उसे डिलीट करें
wwwgooglecom टाइप करें
ENTER की प्रेस करें
अब आप गूगल होमपेज में होंगे
बैक एरो आइकन पर क्लिक करने पर आपको उस पेज पर ले जाएगा जहाँ आप पहले थे
गूगल होमपेज पर वापस जाने के लिए फॉरवर्ड एरो पर क्लिक करें
उर्ल बार के दायीं ओर घर के आकार जैसा एक आइकन है
आप जिस भी वेबपेज पर हैं यह बटन आपको वहाँ से डिफाल्ट होमपेज पेज पर ले जाएगा
यह फंक्शन उपयोगी है जब आप किसी विशेष साईट या सर्च एंजिन से ब्राउस कर रहे हैं
होमपेज बटन पर क्लिक करते हैं
याद है हमने होमपेज को wwwyahoocom में बदला था
इसके परिणामस्वरूप होमपेज बटन क्लिक करते ही यह हमें याहू होमपेज पर ले आता है
अब बुकमार्क्स बार को देखते हैं
बुकमार्क्स उन पेजस पर जाने में मदद करता है जहाँ आप बार बार जाते हैं
उर्ल बार में wwwgmailcom टाइप करें
पेज लोड होने पर उर्ल बार के दाईं ओर जो स्टार का चिन्ह है उस पर क्लिक करें
आप देखते है कि स्टार पीले रंग का हो जाता है
फिर से स्टार पर क्लिक करें
एक डाइअलॉग बॉक्स आता है
फोल्डर ड्रॉपडाउन मेन्यू से बुकमार्क्स टूलबार चुनें
ध्यान दें कि जीमेल बुकमार्क अब बुकमार्क्स टूलबार में जुड़ गया है
याहू होमपेज पर जाने के लिए होमपेज आइकन पर क्लिक करें
जीमेल बुकमार्क पर क्लिक करें
यह आपको जीमेल लॉग इन पेज पर ले जाएगा
आप उन साइट्स के लिए बुकमार्क्स का उपयोग कर सकते हैं जहाँ अक्सर जाते हैं लेकिन नहीं चाहते कि वह आपका होमपेज हो
आगे हम साइड बार को देखते हैं
व्यू और साइडबार पर क्लिक करें और फिर हिस्टोरी पर क्लिक करें
बार के बाईं ओर आप तीन ऑप्शंस देखते हैं तोड़े येस्टरडे और ओल्डर थान 6 मोंथ्स
प्रदर्शित ऑप्शन्स उस कंप्यूटर पर फायरफॉक्स के उपयोग के अंतराल का वर्णन करते हैं
मेन्यू को विस्तृत करने के लिए तोड़े आइकन के बगल में प्लस चिन्ह पर क्लिक करें
गूगल होमपेज पर जाने के लिए गूगल लिंक को चुनें
देखा कितना आसान है उस साईट पर जाना जहाँ आप पहले गए थे
साइड बार का खुद का एक सर्च फंक्शन है
जिस साईट को खोजना चाहते हैं उसका नाम सर्च बॉक्स में टाइप कर सकते हैं
यह फिर उसे खोजने के लिए हिस्टरी में ढूंढेगा
सर्च बॉक्स में गूगल टाइप करें
परिणाम के रूप में सबसे पहले गूगल होमपेज आता है
साइड बार के ऊपरी दाएँ कोने में छोटे एक्स पर क्लिक करके साइड बार हटा सकते हैं
चलिए अब देखते हैं स्टेटस बार क्या करता है
ब्राउज़र विंडो में निचली तरफ स्टेटस बार है जो हमें हमारी साइट लोड होने का स्टेटस बताता है
उर्ल बार में जाएँwwwwiredcom टाइप करें और एन्टर प्रेस करें
स्टेटस बार पर तुरंत देखें यह उस वेबपेज लोड होने की स्थिति बताएगा
स्टेटस बार हमें यह जानने में मदद करता है कि क्यों एक विशेष साइट लोड नहीं हो रही है साइट को लोड होने में कितना टाइम लगेगा इत्यादि
अब कंटेंट एरिया को देखते हैं
यहीं पर आप वेबपेज के कंटेंट देखेंगे जिसे आप देख रहे हैं
हम इस ट्यूटोरियल के अंत में आ चुके हैं
इस ट्यूटोरियल में हमने फ़ायरफ़ॉक्स इंटरफेस और टूलबार्स के बारे में सीखा
इस नियत कार्य कि कोशिश करें
अपने होमपेज को wwwspoken tutorialorg में बदलें और उसे देखें
ब्राउज़र की हिस्टरी फंक्शन का उपयोग करके याहू वेबसाइट पर जाएँ
निम्न लिंक पर उपलब्ध विडियो देखें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
जिसे भारत सरकार के एमएचआरडी मंत्रालय के राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने आई सीटी के माध्यम से समर्थित किया है
इस मिशन पर अधिक जानकारी दिए गए लिंक पर उपलब्ध है httpspoken tutorialorgNMEICT Intro यह स्क्रिप्ट सकीना शेख द्वारा अनुवादित है तथा आईआई टी बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद